यहां पे ये एक किरानी दुकान है कांटे--

यहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं।

उठाया जा रहा है बाजू में बिल्डिंग है।

बड़ा सा पार्क है बाज़ू में ये--

पेन्स के डब्बे फेविकोल के डब्बे दिख रहे हैं।

रिसेप्शनिस्ट --

और यहां पे ऊपर बहुत सारी लाइटिंग्स लगाई गई स्पीकर्स है।

खतरे पड़े हुए हैं फरसियाँ हैं।

यहां पे ऊपर एल_इ_डी लाइट्स है फेयाना लगे हुए हैं बड़े बड़े--

पर्दे डाले गए हैं लकड़ियां लगाई गई यहाँ पे बोर्ड लगाया गया--

एक आदमी दिख रहा है कंक्रीट पड़ी हुई है आजू बाजू बड़े-बड़े झाड़ा भी दिख रहे हैं।

ये एक यहाँ पे द रॉयल --

बाहर गाड़ियां है अंदर लोग हैं।

यहां पे बहोत सारे बैटा हैं रबर बॉल प्लास्टिक बॉल है छोटे बड़े --

ऊपर एल_इ_डी लाइट्स है स्टिकर्स स्पीकर्स है जग रखे हुए --

एसीयां लगी हुई है बहुत सारे यहां पे--

ये एक बड़ी सी यहां पे--

मोबाइल्स को यहां पे रिपेयरिंग किया जाता है यहां पे मोबाइल रिपे--

यहां पे बैठने के लिए बहोत सारे--

टाटा भी है और यहां पे बहोत सारे लोग--

और सामने बहुत सारे पौधे हैं बिल्डिंगा है बहुत सारे यहां पे बड़े-बड़े झाड़ा भी हैं यहाँ पे।